कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं किड्स जो की नीचे की तरफ खड़े हुए हैं।

ये एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है जहाँ पे दुल्हन रो रही है और उसके पास शयद उसकी मम्मी खड़ी है जोकि आसु पोछ रही हैं ।

क्रिस्चियन स्कूल दिखाई दे रहा है जहाँ पे बच्चे कुछ एक्विटी कर रहे हैं टीचर --

ऑर्केस्टा चल रहा है यहाँ पर बहोत से लोग देख रहे है| कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं।

यहाँ खेती हुई है कुछ बोया गया है जहाँ पर बहोत सारे पौधे से दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं कुछ फोटोग्राफरस वहाँ बाहर खड़े हुए हैं और बहुत सारी पब्लिक दिखाई दे रही है।

ये भी एक शादी का फोटो दिखाई दे रहा है जो की बाहर की शादी है उम्म कुछ फॉरेनर दिखाई दे रहे है यहां पर।

पीछे डेकोरेशन किया हुआ है बोहोत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है और इन्होंने जो बॉयज है उन्होंने स्काइ ब्लू शर्ट पहनी है।

कुछ लोग काम कर रहे है वहां पर डेकोरेशन का एक अंकल खड़े है दो बच्चे है जो की बैठे हुए है वहां पर।

यहाॅं एक झूले यहाॅं मेला लगा हुआ है जहाॅं पे बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

और ग्रीन हरी है यहां पर बहुत सारी और बादल भी दिखाई दे रहें है।

ये किसी होटल का रूम दिखाई दे रहा है जिसमे लगता है की ओपनिंग हो रही है बैलून वगेरा लगाया हुआ है और टेबल चेयर लगी हुई है यहाँ पर --